बड़ा सा मैदान के बीच में पीछे पेडे वगैरा है घरे वगैरा खुला आसमान दिख रहा है।

इस चित्र में एक तलाब दिख रहा है बड़ा सा कुछ लोग इसमें पूजा कर रहे है कुछ लोग डूपकी लगा रहे है सामने एक लडका ज़ो की तस्वीर लिए ले रहा है पीछे में एक मंदिर है।

पेड़ वगेरह दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है बदली छाया वहाँ--

बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है ऊपर में जहानाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है| नीचे में कुछ लोग हैं सामने से एक सीढ़ी गयी हुई है बाइके साइकिल वगेरह लगी हुई है।

इस चित्र में एक भवन दिख रहा है जिसपे बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए भी हैं।

इस चित्र में एक वाटरफल है जिसमें जंगल फ़्रेंड्स लिखा हुआ है दोनों तरफ से सीढ़ियां है ऊपर जाने के लिए स्लाइडिंग वगेरा दी गई है और नीचे में कुछ लोग नहा रहे हैं ।

इस चित्र में सामने में एक बोर्ड दिख रहा है स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का।